आप देख सकते है बागीचा है बागीचा के अंदर--

इसको सजाया गया है बहुत ही अच्छे तरह से निचे बनया गया बहार में बहुत सारे आदमी है।